बहोत सारी शरटें दिखाई दे रही है जो कोई ब्लैक कोई व्हाइट कोई रेड इस तरह की शरटें दिखाई दे रही है एक डम्मी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे साइकिलें दिखाई दे रही है पास में मुझे एक मोटरसाइकल दिखाई दे रही है।

और सामने की तरफ मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं लोह की बनी हुई रेलिंग दिखाई दे रही है एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और एक गाडी भी दिखाई दे रही है।

और इस मंदिर के आसपास की बात करु तो मुझे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है मंदिर के गेट के पास दो आदमी चिप --

मुझे कुछ भगवानों की तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर कुछ --

सामने की तरफ मुझे कुछ ए_सी और बड़ा मकान दिखाई दे रहा है जिनकी खिड़कियां सरियों से बनाई हुई है।

चप्पलों की बनी हुई सड़क दिखाई दे रही है सामने एक तरफ दुकान दिखाई दे रही है एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

इसी लाइब्रेरी की फोटो लग रही है लाइब्रेरी की बाहर की फोटो लग रही है।